जिम में एक आदमी एक्सरसाइज कर रहा हैं और उसने --

पेड़ हैं उन पर हरी पत्तियाँ --

इस पर मिरर्स लगाए हुए हैं।

और बेंच पर बहुत सारे काले नीले बैग रखे --

नमक और मिर्चों के लिए डब्बे रखे है ओर दीवारों पर फैंस ओर ऐसी लगाए हुए है ओर कांच के --

काट रही है जो की गुलाबी रंग का है और एक छोटी सी बच्ची--

एट टू सिक्स एट एट लिखा हुआ है उसके पास में ही एक--

एक पुरुष सफेद रंग की टी-शर्ट पहने हुए मोबाइल में फोटो खींच रहा हैं।

चारों तरह बुक में लाल पीले हरे नीले कबर लगे हुए हैं।

सड़क के किनारे जिला रोजगार एक सब रोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोरबा--